--और एक काउंटर बना हुआ है एक जिसमें ऑरेंज कलर की प्लाई लगी हुई उसके ऊपर पेपर रखे हो कुछ सामान रखा है और एक स्टूल --